सुंदर है यहाँ पे घास लगी है पेड़ पौधे लगे हुए हैं एक मूर्ति बनी हुई है लाइटें जल रही हैं।

यह एक बोहोत बड़ा मकान या पैलेस है। यहाँ पर लोग शादी के लिए आते हैं बोहोत लोग हैं। यहाँ अनेक प्रकार की लाइट जल रई चाँदनी लगी हुई है पर्दे लगे हुए हैं।

एक बड़ा सा कारखाना है। यहाँ पर पाइप लाइन है चद्दर लगी हुई हैं मशीनें रखी हुई हैं कुछ बोहोत का काम करते हैं।

बड़ी-बड़ी मशीनें भी हैं चद्दर लगे हुए हैं पाइप लाइन है ऐंगल्स भी लगे हुए हैं बोहोत सारे।

यहां एक बहुत बड़ा मंच है। यहां पर लोग प्रोग्राम शादी वैगेरह जयमाला होता है।

यह एक पुराना महल है यहाँ पे बहुत से लोग घूमने आते है बड़ी यहाँ पे बहुत सारे कमरे भी है मंदिर भी है।